ये विद्यापति का गली वाला रोड हैं यहाँ पे खुशी ब्यूटु खुशी ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे घर बने हुए हैं ।

जहां जिला कोरोना टीका केंद्र है यहां पे कलेक्टर आके अं स्पीच देने वाला है।

यह एक तबैला हैं जहां पर एक गाय और एक छोटा अ म गाय रखा हुआ हैं दोनो घास खा रहा हैं एक आदमी पीछे से फोटो घीच रहा हैं।

यहां पे बहुत सारे क्लास है यहां पे एडमिशन के लिए बहुत सारे रुपैया लगते हैं।